यहां पर बहोत भीड़ दिख रहीं हैं।

बच्चे के खिलौने भी मिल रहे हैं।

यह दुकान बहोत बड़ी हैं यहां पर सभी किस्म की साइकिल रखी हैं।

यहां पर एक जे_सी_बी खुदाई करती दिख रही है।

यहां पर पानी बेहता हुआ दिख रहा हैं।

यूनियन बैंक का ए_टी_एम है।

जो बहोत प्यारा लग रहा हैं।

जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यह गार्डन बहोत ही प्यारा है।

जहां से पावर हाउस दिख रहा है।

और एक खंभा भी लगा हुआ है।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

यह एक बंदूक की दुकान है।